के कुछ चार्ट्स है उसके पत्ते अ अ कुछ अ अ आकृती कर राहै है लाइट होल्डर और थोडा अ अ आकृती देख सकते है।

इस चित्र में हमको एक दुर्गा देवी का मंडप दिख रहे है इधर दुर्गा देवी और कुछ अदर देवताओं विग्रह है।

ये चित्र तो एक स्कूल का खारघर है एक कॉरिडॉर मे अ अ बेंचेस लगाकर है और उसमे अ अ चित्र बिठाकर है।

हम देखे तो एक बिल्डिग का कंस्ट्रक्शन तो हो राहै है बिल्डिग का कंस्ट्रक्शन मे पुरा अ अ लोग --